कुर्सियां रखी है टेबल रखी है बहुत सारे कॉस्मेटिक रखे है एक फर्नीचर जैसा बना हुआ है।

खम्भे लगे है खिड़कियाँ बनी है गच्छी पे बहोत बड़ी --

पढ़ रहे है एक आदमी कुछ बोर्ड पर पढ़ा रहा है उसने मास्क लगा रखा है सभी ने मास्क लगा रखे हैं ।

कुत्ते बैठे हुए है एक अंकल खड़े है एक बहोत बड़ा ब्रीच जैसा बना हुआ है वाइट कलर का एक खम्भा लगा है लाइट का--

काले कलर का पर्दा लगा है चढ़ाव लगी हुई है वाइट कलर का ऊपर खम्बे लगे है लाइटे लगी हुई है नीचे घास लगी हुई हैं |

यह एक बहुत बड़ा ग्राउंड है इसमें लड़ लड़के उनो क्रिकेट खेल रहै है।

बुक्स रखी हुई है एक आदमी ने मास्क लगाया है एक आदमी ऑरेंज कलर की टीशर्ट में बैठा है।

बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है ऑटो खड़ी हैं ।

समोसे कचोरी एक अंकल समोसे बेच रहे है एक अंकल बैठे हुए हैं ।

ग्रीन कलर की यह एक दीवाल बनी हुई है उसके पास में पेड़ -पौधे लगे है एक लाइट का खम्बा लगा हुआ है जालियाँ लगी हुई हैं ।

ब्लैक कलर की जालियाँ लगी है बहुत सारा नीचे पत्थर व लगे हुए है ईट रखी है बहुत सारे पेड़ -पौधे लगे हुए है बहुत बड़ा जंगल हैं ।

बिल्डिंग जैसा बना है उसमें बहुत सारी लाइट लगी है दो तीन लड़के उनो खड़े है बहुत सारे पेड़ -पौधे लगे हुए है ।

बहुत सारे पेड़-पौधे लगे है पीछे बहुत सारे माकन उनो बने है।

एक लड़की खड़ी हुई है बहुत सारी लेडीसो ने साड़ी पहनी हैं ।